यह तस्वीर में बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहा है जो कि व्हाईट कलर में दिख रहा है।

ये तस्वीर में एक टेबल दिखाई दे रहा है यह तस्वीर में एक पोस्टर दे रहा है।

तस्वीर में मुझे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के आगे यहां एक मूर्ति जैसा भी दिखाई दे रहा है कलरफुल में।

यहां ये तस्वीर में एक जनता भी देख रहा है जोकि ब्लैक ब्लू टाइप में देख रहा है।

जो है एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड जिसमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

गेट दिखाई दे रहा है जोकि आयरन से बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहुत सारा पानी की बोतल दिखाई दे रहा है।

यह एक टेबल जैसा भी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये तस्वीर बहोत सारे इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

यह एक बिस्तर दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर में है या--

तस्वीर में जो है एक रूम दिख रहा है रूम जो इसमें व्हाइट कलर ग्रीन कलर में पेंट करते हुए दिख रहा है।

जो काफी पुराना घर एक दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में जो छोटा सा बाल दिखाई दे रहा है बाल जो बहुत सारे जैसा दिखाई दे रहा है।

और यहां बहोत सारे बड़ा प पत्ता भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे लाईट बल्ब जलती हुई दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

यहां बहुत सारे बाइक्स दिखाई दे रहा है ये तस्वीर में वाइट कलर की कार भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है।

दृश्य में जो आयरन की सीट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहोत सारे इंसान लोग भी योगा करते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां ये तस्वीर में बहोत बड़ा टी के गार्डेन दिखाई दे रहा है।

यह एक पोस्ट भी दिखाई दे रहा है आयरन का।

ये तस्वीर में बहुत सारे मोटर बाइक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में जो है ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में जो है एक पार्क दिखाई दे रहा है।

यहां पर ग्रीन कलर का सीढ़ी भी दिखायी दे रहा है जो कि लोहे से बना हुआ देख रहा है।

यहां ये तस्वीर में एक बाइक भी दिखाई दे रहे--

यहां सीढ़ियां भी दिखाई दे रहा है तस्वीर में बंधन बैंक लिख के भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में जो है एक ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है ग्राउंड में छोटे छोटे घास जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत सारे सीमेंट भी दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में जो एक स्टैंड दिखाई दे रहा है जो की इनसान कुछ बनाते हुए दिख रहा है।

तस्वीर में जो एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क जिसमें ब्राउन कलर मे भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे बाइसाइकिल दिखाई दे रहा है।

यह पेड़ में एक बैनर बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां दो चेयर दिखाई दे रहा है रेड कलर में एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में कार्टून बॉक्स में भी समान दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक व्हाइट कलर के एक बड़ा बिल्डिंग भी देख रहा है।

तस्वीर में एक लैपटॉप दिख रहा है जो की ब्लैक कलर में है।

ये तस्वीर मुझे एक अंब्रेला जैसा भी एक स्टैंड दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक शॉप देख रहा है शॉप में जो बहुत सारे लाइट बल्ब जलाते हुए देख रहा है वाइट कलर में।

ये तस्वीर में बहुत सारे इंसान लोग भी दिख रहा है।

ये तस्वीर में खुले आसमान भी दिख रहा है थोड़ा ब्लू और वाइट कलर में दिख रहा है।

ट्रक जो बहुत सारे फ्लॉवर्स के साथ सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में पेड़ भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में--

इस तस्वीर में जे यूतन जैसा सरक दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रहा है मूर्ति जो है इसमें वाइट कलर में दिखाई दे रहा है दूसरा है गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है।